राइट साइड में बाउंड्री दी गई है वाइट कलर की दीवार है साइड में कुछ छोटे पौधे लगे हुए हैं।